पास में पेड़ भी बहुत सारा है और आसमान भी एकदम साफ है और एकदम सनसेट का टाइम है यह।

और आसपास में बहुत सारा पेड़ दिखाई देगा हरा भरा पेड़ बहुत सारा दिखाई देगा।

यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है लाल और सफेद रंग का कपड़ा पहना--

इस पिक्चर में हम लोग एक स्विमिंग पूल दिखाई देगा।

वहां पर हम लोग वॉल में स्टूडियो दिखाई देगा।

यहां पर हम देख सकता है बहुत सारा बाइक खड़ा हुआ है और यह एक ए_टी_एम का बाहर का तस्वीर है।

बीच पे एक नीले रंग का पोस भी खरा हुआ है।

इस पिक्चर में हम एक आदमी जींस और ब्लू कलर का शर्ट लगा के दिखाई देगा।

और विंदो की बाहर दिखाई देगा तो बहोत सारा पेर रखा हुआ है।